उस पर नीले रंग के कांच लगे हैं।

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है।

जिस पर काले रंग की सीढ़ियां बनी हुई हैं।

वह लाल रंग की टेबल और कुर्सी पर बैठा है।

और काफी तरह की कुर्सियां लगी हुई हैं।

जिसमें काढ़ियों का सामान मिलता है।

आर किसी दुकान के अंदर है जिस पर काम चल रहा है।

यहां पर एक बड़ी सारी गाड़ी है जिस में पास दो आदमी है।

यह एक वाटर पार्क है जिसमें पानी के अंदर तरह-तरह के झूले हैं।

और आसपास थोड़ी बहुत हरियाली भी है।

पास में एक मंदिर भी बना हुआ है।

एक लड़का उस पर निशाने लगा रहा है।

काफी रंग बिरंगी सी गेंदे हैं।

यहां एक जिम है जिस पर कसरत करने की मशीनें रखी हुई है।

और एक जाली के गमले लगे हैं जिस में पेड़ लगाए हुए हैं।

यहां पर एक घर बना है जिस पर सफेद रंग किया है।

आस-पास काफी मिट्टी और कचरा पड़ा है।

और काउंटर पर दो लड़के खड़े हैं।

यहां पर फलों का सब्जी की एक दुकान है।

रंग बिरंगी थी काफी अच्छी डलियाएं हैं।

आदमी के हाथ दिखाई दे रहे हैं--

यहां पर एक बड़ा सारा मंच बना है।

और उसमें कांच लगे हुए हैं।